इन्सान है जो की कुछ बैठे हुए कुछ खड़े हुए हैं |

नवाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर बहोत सारे इंसान खड़े हुए हैं और दो बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पर मज्जिद का कलर --

और यहाँ पर बहुत सारी सामन मिलते हैं चॉकलेट्स मिलती है सब मिलता है और यहाँ पर गर्ल्स स्कूटी चला रही है और यहाँ देख रहे हैं अंकल जा रहे हैं और यहाँ पर --

और उसके बगल में ए और दुकाने हैं और यहाँ पे बिल्डिंग --

यहाँ पर है यहाँ पर बहुत सारी उम गाड़ी रखी हुई हैं |

पर लगा हुआ है एक बोर्ड लगा हुआ है एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है आस-पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है पेड़-पौधे --